नमस्कार किकाड में मैपिंग कंपोनेंट्स विथ फुटप्रिंट्स के स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे सम्बंधित फुटप्रिंट्स के साथ घटकों को मैप करना
इस ट्यूटोरियल के लिए इलैक्ट्रॉनिक सर्किट की बुनियादी जानकारी पूर्व आवश्यकता है
यूज़र को पता होना चाहिए कि किकाड में सर्किट स्किमैटिक को कैसे डिज़ाइन करते हैं
और इलैक्ट्रिक रूल चेक और नेटलिस्ट जेनेरेशन कैसे करते हैं
सम्बंधित ट्यूटोरियल्स के लिए कृपया spoken tutorialओआरजी पर जाएँ
हम इस ट्यूटोरियल के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में उबन्टु 1204 के साथ किकाड 2011 हाइफन 05 हाइफन 25 उपयोग कर रहे हैं
किकाड शुरू करने के लिए उबन्टु डेस्कटॉप स्क्रीन के ऊपर बाएं कोने पर जाएँ
पहला आइकन जोकि दश होम हैं उस पर क्लिक करें
सर्च बार में टाइप करें किकाड और एंटर दबाएं
यह किकाड मेन विंडो खोलेगा
ईस्कीमा खोलने के लिए ऊपरी पैनल पर जाएँ ईस्कीमा टैब पर क्लिक करें
एक इन्फो डायलॉग बॉक्स दिखेगा जो कहता है कि यह स्किमैटिक नहीं ढूँढ सकता
ओक पर क्लिक करें
अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर जो पहले बनाया गया था मैं उसका सर्किट स्किमैटिक प्रयोग करुँगी
ऐसा करने के लिए मैं फाइल मेन्यू पर जाऊँगी ओपन पर क्लिक करूँगी
मैं इस विंडो को दृश्य क्षेत्र में लाऊँगी
उस फोल्डर को चुनें जिसमें फाइल सेव की गयी है
और ओपन पर क्लिक करें
यह सर्किट स्किमैटिक खोलेगा
मैं माउस का स्क्रोल बटन प्रयोग करके ज़ूम इन करुँगी
हमने इस सर्किट के लिए नेटलिस्ट पहले ही बना लिया है
अब हम घटकों को मैप करने की प्रक्रिया को देखते हैं जो फुटप्रिंट्स के साथ स्किमैटिक में प्रयोग हुई है
फुटप्रिंट उस घटक का वास्तविक लेआउट यानी विन्यास है जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड में स्थित है
घटकों को मैप करना शुरू करने के लिए ईस्कीमा विंडो के ऊपरी पैनल पर जाएँ
रुन सीवीपीसीबी बटन पर क्लिक करें
यह सीवीपीसीबी विंडो खोलेगा
यह कंपोनेंट लाइब्रेरी एरर शीर्षक वाला एक डायलॉग बॉक्स भी खोलेगा
इसे बंद करने के लिए ओक बटन पर क्लिक करें
ध्यान दें कि यह project1नेट फाइल खोलता है
कृपया याद करें कि हमने नेटलिस्ट जैनरेशन ट्यूटोरियल में यह फाइल बनाई थी
सीवीपीसीबी विंडो को दो पैनल्स में विभाजित किया गया है
बाएं पैनल में पहला कॉलम सीरियल नंबर यानी क्रम संख्या है
दूसरा कॉलम स्किमैटिक में उपयोग हुए घटकों की सूची के लिए रेफरेन्स इद दिखाता है
तीसरा कॉलम सम्बंधित घटकों की वैल्यूज़ दिखाता है
दाँया पैनल उपस्थित फुटप्रिंट्स की सूची देता है
अब हम घटकों को उनसे जुड़े हुए फुटप्रिंट्स के साथ मैप करेंगे
हम सीवीपीसीबी विंडो के दायें भाग में चयनित घटक यानी सी1 के लिए उपलब्ध फुटप्रिंट्स की सूची देख सकते हैं
अब हम चयनित घटक से सम्बंधित फुटप्रिंट देखेंगे
सीवीपीसीबी विंडो के ऊपरी पैनल पर व्यू सिलेक्टेड फुटप्रिंट पर क्लिक करें
यह फुटप्रिंट विंडो खोलेगा जो चयनित फुटप्रिंट की इमेज दिखाता है
हम अलग अलग फुटप्रिंट्स पर क्लिक करके उनकी इमेजेस भी देख सकते हैं
अब मैं फुटप्रिंट विंडो को बंद करुँगी
पहले घटक सी1 के लिए दायें पैनल से हम फुटप्रिंट सी1 चुनेंगे
पहले घटक को सी1 फुटप्रिंट नियुक्त करने के लिए फुटप्रिंट पर डबल क्लिक करें
जैस आप देख सकते हैं सूची में पहले घटक को सी1 फुटप्रिंट नियुक्त किया गया है
उसीप्रकार दूसरे घटक सी2 के लिए भी हम फुटप्रिंट सी1 पर डबल क्लिक करके इसे चुनेंगे
अगले घटक डी1 के लिए हम लेड हाइफन 3म् चुनते हैं
कनेक्टर प1 के लिए हम दायें पैनल से सिल हाइफन 2 चुनते हैं
मैं दायें पैनल में इसे चुनने के लिए नीचे स्क्रॉल करुँगी
र1 के लिए हम र3 चुनते हैं
र2 के लिए हम र3 चुनते हैं
र3 के लिए हम र3 चुनते हैं
उ1 जोकि एलएम555 है के लिए हम डिप हाइफन 8 अंडरस्कोर 300 अंडरस्कोर एल चुनते हैं जो 8 पिन वाला मानक आईसी फुटप्रिंट है
अब सीवीपीसीबी विंडो के ऊपरी पैनल पर सेव नेटलिस्ट एंड फुटप्रिंट फाइल्स बटन पर क्लिक करके हम नेटलिस्ट को सेव करेंगे
यह सेव नेट एंड कंपोनेंट लिस्ट विंडो खोलेगा
बेहतर दृश्य के लिए मैं इस विंडो को रीसाइज करुँगी
इस फाइल को सेव करने के लिए सेव पर क्लिक करें
यह फाइल को सेव करेगा और स्वतः ही सीवीपीसीबी विंडो को बंद भी करेगा
अब फुटप्रिंट्स की जानकारी के साथ नेटलिस्ट अपडेट हो गया है
यहाँ घटकों को मैप करने की प्रक्रिया पूरी हो गयी है
ईस्कीमा विंडो पर जाएँ
अब इस विंडो को बंद करें
किकाड मेन विंडो को भी बंद करें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
इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा सीवीपीसीबी विंडो प्रयोग करके सम्बंधित फुटप्रिंट्स के साथ घटकों को मैप करना
निम्न लिंक पर उपलब्ध वीडिओ देखें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
अधिक जानकारी के लिए कृपया कॉन्टैक्ट एटी स्पोकेन हाइफेन ट्यूटोरियल डॉट ओआरजी पर लिखें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
इस मिशन पर अधिक जानकारी स्पोकेन हाइफन ट्यूटोरियल डॉट ओआरजी स्लैश नमेक्ट हाइफन इंट्रो पर उपलब्ध है
आई आई टी बॉम्बे से मैं श्रुति आर्य अब आपसे विदा लेती हूँ
हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद